बैलून से भी सजाया गया है।

सर्विस सेंटर भी दिख रहा है बगल में--

यह एक बाहर का दृश्य है यहां पे आसमान दिख रहा है।

यहां पे कई सारा बिल्डिंग बना हुआ है पूरा फ्लैट के साथ।

यह एक बाहर का दृश्य है।

यह एक बाहर गार्डन का दृश्य है।

एक चेयर भी रखा हुआ है ।

एक और उनके साथ छोटी सी बच्ची है।

मट्टी का भी बर्तन है जोकि कटोरी छोटे छोटे से रखे हुए हैं पटिए के ऊपर।

और भी यहां पे लकड़ियां दिख रही हैं सुखी सुखी जो कि ब्लैक पनी में मट्टी के साथ रखी हुई है।

दीवार में टाइल्स लगा हुआ है दो कलर में ।

एक बच्चा खड़ा है साइड में एक और बैठने जा रहा है नीचे टेबल पे।

छोटा छोटा टेबल बना हुआ है।

ऊपर एक ब्लैक कलर का डब्बा है उसमें चम्मच टिशु वगैरा रखा हुआ है।

टाइल्स लगा हुआ है।

बेंच के ऊपर एक पानी बॉटल भी रखा हुआ है।

ऊपर में फैन भी दिख रहा है।

कुछ व्यक्ति बैंक के बाहर आ रहे हैं जो की वाइट कलर का ड्रेस पहने हुए हैं।

कुछ कपड़ा भी बेच रहे हैं लगा कर।

नीचे में उसका सेट टॉप बॉक्स भी है काउंटर पे रखा हुआ--

यह एक ऑफिस का दृस्य है।

यहां पे एक टेबल रखा हुआ है ब्राउन कलर का।

यह एक शॉप का दृश्य है।

नीचे में मट्टी है उसमें हरा हरा घास सूख गया है।

यह एक आइसक्रीम शॉप का दृश्य है।

यह औरत गेट खोल के घर की ओर जा रहे हैं।